शर्ट पैंट ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ है सामने बहुत सारे पंखे है जिसमे दो पंखे चल रहे है। एक पंखा बन्द है एंड सामने चर्च --